ये भी कंपनी काफी अच्छी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट बहुत ही --

जैसे फेविकोल फेवीक्विक और बहोत सारे चीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं।

बाहर में कुछ लाइट्स जले है जिसके वज़ह से रोड में हल्की फुल्की रौशनी दार हैं।

काफी सुंदर बनी ये बरा सा ये पंडाल जो बहोत ही अलग-अलग कलरो --

टीचर्स कैफ़े ये नाम काफी अलग है हमलोगो ने काफी कैफ़े का नाम सुना है लेकिन ये टीचर्स कैफ़े पहली बार--

यहाँ पे जितने भी है सल फ़ास्ट फ़ूड के है जैसे पिज़्ज़ा बरगर और ओ कोल्डड्रिंक की सामने--

पेड़ बना उसके ऊपर पानी का पहवारा गिर रहा है जो दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे है।

कुछ लोग बैंक से अंदर आ रहे है और कुछ लोग बाहर निकल रहे है |